औ पिपाल का पेड़ का पत्ता पूरा हरा भरा है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और ग्राउन्ड में एक रखी हुई है जनरेटर और यहाँ पे मंदिर के ऊपर एक सपीकर लगाई है।

और यहाँ पे दो तीन मंदिर बने हुए हैं देखने में बहोत ही अच्छे-अच्छे लगते हैं बहोत ही अच्छा मंदिर है ये बहोत ही सुन --

और यहाँ पे बहोत लोग सब खड़े हैं और यहाँ पे एक स्कॉर्पियो को ठीक कर रहे हैं जो कि देखने में बहोत ही अच्छा लगता है।

यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों सभी यहाँ पढ़ रहे हैं जोकि देखने में काफी सुंदर लग रहे --

और यहाँ पे सभी छोटे बड़े- बड़े पेड़- पौधे ये पहाड़ जो है बहोत ही अच्छा यहाँ पर हर- हरे पेड़- पौधे है जोकी देखने मे काफी सुंदर लग रहे है आप देख सकते है कित्तना अछे यहाँ पे पत्ते सब हरे- हरे--